ट्रक और ऑटो और गाड़ियां जाती हुई दिखाई दे रही हैं और इस तरफ कुछ ठेले भी लगे हुए हैं और एक--

ठेले पर एक बैग रखा हुआ हैं और यहाँ पर खुले मे एक आदमी झाड़ू लगा रहा है।

--और इनके पीछे के तरफ बहुत घना जंगल दिखाई दे रहा हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा टीन सेट लगी हुई हैं।

पूरे समान व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है और यहाँ लाइट की पूरी व्यवस्था की हुई है इस जेन्ट्स पार्लर में पीला और हरा कलर किया गया है।

जैसा की आप देख सकते हैं एक दिलीप जेन्ट्स पार्लर की दुकान है जिस्म के बहोत बड़े बड़े कांच के गेट लगे हुए हैं।

जैसा की आप देख सकते हैं एक वूमन्स पार्लर है जिसमे पिंक और ब्लैक कलर के बलून लगाए हैं।